ये पुराने ज़माने का गुम्मद है।

व दुसरे फ्लोर पे भी कोई जेंट्स खड़े हैं।

वाटर पाइप है। इसमें से पानी निकल रहा है और हरे-भरे पेड़ हैं।

इसका नाम केनरा बैंक है। इसमें एक जनरेटर रखा है। एक बाइक खड़ी है।

ये एक बड़ी-सी शॉप है।

ये एक- ये एक- एक फिटनेस जिम का सेलिब्रेशन है। यहाँ टेबल है। ढेर सारे --

और एक रेड कलर की दीवार है।